यहां पे बहुत से आदमी हैं एक गाड़ी है।

यहां पे बहुत सी कुर्सियां है इसमें कुछ ब्लैक है लाल है।

यहां पे बहुत सी कुर्सियां पड़ी हैं।

यहाँ पे एक आदमी है और कैमरा लगा है दो लाइट एक गद्दा है।

यह एक स्कूल है इधर बहुत सी मेज रखी है।

और बच्चों के खिलौने रखे हैं।

और एक पन्नी रखी है और फूल है।

और एक टीन का पल्ला है और यहां पर बहुत सारे कुरकुरे टंगे हैं।

और सड़क है और पुलिस वाले हैं।

और आदमी ने बैग टांग रखे हैं।

और एक औरत है और लीला पर्दा लगा है और व्हाइट है।

और एक लाइन जा रही है।

यहां पे थमले पड़े हैं तीन आदमी है और एक पोस्टर लग रहा है एक बिल्डिंग है ऊपर को लाइन जा रही है।

यहां पे बहुत से आदमी दिख रहा है और इनके हाथ में डंडे हैं।

यह एक आदमी है और इसने कैप पहन रखी है और इसके हाथ में मोबाइल है।

यह एक स्कूल है यहां एक एक्टिवा है।

यह एक ग्राउंड है और यह यहां पर पिच बना रखी है और बहुत से आदमी खेल रहे है।

जो बना है और यहां पे बहुत से पेड़ लगे है।

और यहां पर मकान खड़े है।

यह एक मंदिर है यहां पर एक पंडित जी है और एक आदमी है।

एक बोर्ड इधर लगा है और यहां पर खंभे खड़ा है।

यहां बहोत से आदमी हैं यहां पर तीन मूर्ति लगी है।

यह एक सफाई कर्मचारी है इसके हाथ में झाड़ू है एक मेज रखी है और एक घर है और एक ए_सी है।

और चार कुर्सियां रखी है उधर।

यह एक हिरन है इसके दो कान हैं और यहां पर पत्थर है और ग्राउंड है और पानी है।

यहां पे बहुत से आदमी हैं और उधर पानी है और हरे घास के बहुत से पेड़ लग रहे है।

ये बहुत सी लीची है और वाइट है लाल है ये प्लेट में रखी और इनकी हरी पत्ती है।